बाहर की तरफ दो चार आदमी खड़े हैं एक आदमी के पीछे एक बैग डला हुआ है।

गृह चार्ट चिपका हुआ है श्री करनेन्दद्र का।

यहां बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत ज्यादा महिलाएं और आदमी खड़े हैं कुछ लड़कियां कुछ लड़के भी खड़े हैं।

यहां पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है कुछ सफेद कलर की गाड़ी है कुछ ब्लैक कलर की गाड़ी है बीच मे कुछ मोस्टरसाइकिले भी खड़ी है।

अ फ्रिज पड़ा है लाइट वाले पंखे लगे हुए हैं लाइट बोर्ड लगे हुए हैं स्विच लगे हुए हैं अंदर की साइड एक और सफेद पंखा --

इस रूम के अंदर सामने गैस लगी हुई है सफेद कलर की बहोत ही बड़ी दो चार ए_सी लगी हुई है दीवार के ऊपर --

एक सोफा पड़ा है सोफे के ऊपर एक बैग पड़ा है और दीवार के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें चिपकी हुई हैं।

यहां पर एक मंदिर टाइप का कुछ बनाया हुआ है जिसके ऊपर अलग डिजाइनिंग बनी हुई है उनके आगे बहोत सारे आदमी ख --

यहां पर ग्राउंड में छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे हैं ग्राउंड के अंदर सफेद कलर की धारियां बनी हुई हैं।

बीकाना आइसक्रीम की दुकान है यहां पर जाने के लिए बाहर सीढ़ियां बनी हुई है बाहर दो चार आदमी खड़े एक मोटरसाइकिल खड़ी है।